जहां पर काफी ज्यादा कपड़े रखे हुए हैं और काफी ज्यादा सुंदर ड्रेसेस हैं।

साइड में सजावट के लिए गुलदस्ते भी लगे हुए हैं।

जहां पर काफी ज्यादा सामना है।

होटल का और दिख रहा है जो काफी ज्यादा सुंदर और साफ सुथरा है।

आसमान खराब है बारिश लगी है।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

जो काफी सब सूत्रह ब्रेली दिख रही है।

लकड़ी की कलरिंग की गई है गमले दिख रहे हैं दीवारों पर काफी सुंदर --

कुछ पौधे दिख रहे हैं।

वर्कआउट के काफी सारे इक्विपमेंट हे और कुछ लोग वर्कआउट कर रहे हैं।

एक दीवार सी दिख रही है जिसमें काफी सॉरी पिक्चर्स बनी है।

झूले और बच्चों के खेलने की चीजें लगे हैं।

यहां पर मुझे एक ऑफिस दिख रहा है जो काफी बड़ा है।

यहां मुझे एक जगह दिख रही है।

इस पर काफी सुंदर सुंदर फ्रेमस् लगाई गई है।

डेकोरेशन की हुई है फ्लावर्स लगाए गए हैं एंड बलूंस लगे हुए हैं और--

बैंक के बाहर लौगो भी लगा हुआ है।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

हांकाफी ज्यादा और अलग-अलग कंपनियों के कपड़े लगे हुए हैं।

जिनके फेसेस ब्लर दिख रहे हैं और वो बिल्कुल चट्टानों के बीच में और एक जंगल में है।

कुछ लोग भी खड़े हैं बैकग्राउंड ब्लर है।

यहां पर मुझे एक--

यहां दो-तीन चीज दिख रही है और--

उसके कमरे दिख रहे हैं और फर्श साफ सुथरा है।

जहां एक छोटा सा घर है।

काफी ज्यादा बच्चे डांस कर रहे हैं।